ये स्कूल का गार्डन है यहां पर स्टूडेंट दो स्टूडेंट नीचे बैठे और एक इनके पास खड़ा है और दो स्कूल के अंदर जा रहे हैं और यहां पर --

ने इसकी मराममत कर रहा है और कार के साइडों पर दो स्टैंड वगैरह स्टैंड वगैरह पड़े हुए हैं जिनके साथ कार को ऊपर उठाया गया है।

ग्रिल वगैरा लगाए गए हैं ताकि यहां पर कोई खड़ा होकर देखे तो उसके सैंट्रल वाले।

उसके ऊपर वाली स्टंट वाली साइड में सबसे ऊपर वाली साइड साइडो वाली।

बहुत सारी लाइटिंग वगैरह ऑन की गई है और यहाँ पे हर जगह बहुत ज्यादा ज़ूम है।

ब्रिज के ऊपर रखी हुई है और दूसरी जो है ब्रिज के साइड में रुकी हुई है और दूसरी जो है नीचे जमीन पर रखी हुई है।

ये बहुत ज्यादा लोगो के साधू के पास आये हुए हैं ये यहाँ नीचे क्लीन पर बैठे हुए है और जो साधु है।

उसने येलो कलर का हा येलो कलर का कमीज पहनी हुई है और उसने गले में तस्वीर डाली है और वो सामने बैठा हुआ है।

ये पार्क में पार्क में घर घर घास लगी है और साइड में वगैरह भी है और ये।

सेंट्रल में एक पड़ा है जिसमें बहुत ज्यादा फिशेज है और एक आदमी खड़ा उसे देख रहा है और कुछ लोग अपनी।

ये एक मैकेनिक की दुकान है जहाँ पर इस अलमारी में बहुत ज्यादा वगेरा पड़े हुए है उसके ऊपर भी पड़े हुए है।

यहाँ पर माहोल बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ पर यहाँ पर हवा बहुत है।

ये बड़ी-बड़ी इमारतें नजर आ रही है इसके सामने एक पार्क है पारक में हरी भरी घास है और सीढ़िया उतर कर हम पार्क मे एंटेर होते हैं जहां पर एक बचा है जिसके जिस --

गेट इसके ऊपर स्किन कलर किया गया है और इसके गेट इसका मेन गेट पर ग्रीन कलर किया गया है इसके पास व्हाइट कलर रेड ।

रेड कलर के यह छोटे से पिलर बनाए गए हैं इसमें यहां पर छोटा गेट भी मौजूद है और यहां पर बड़ा गेट भी मौजूद है यहां पर।

ये एक ज्वेलरी शॉप है यहां पर दो आदमी है जिन्होंने पिंक कलर की शर्ट पहनी है ज्वेलरी में नग वगैरा सेट कर रहे हैं और इसमें शी।

वाइट कार के पास भी एक आदमी खड़ा है और दूसरा आदमी सेंटर में से चल रहा है।

जिसके ऊपर जो है शोकेस है वो लकड़ी का बनाया गया है उसमे शीशे का काम भी किया गया है इसके ऊपर रेड कलर का रेड --

ये लोग दिए वगैरह जलाकर यहां पर पूजा कर रहे हैं और इन सब लोगों ने वाइट कलर की साड़ियां पहनी है और जो आदमी है उन्होंने वाइट कलर की मिसलवार पहनी हुई है।